बच्चे और बच्चियां डांस कर रही हैं नाच रही हैं नृत्य कर रही हैं।

और कुछ पेड़ों के लिए घरगोला बनाया गया है जिसमे--

यह एक किराने की दुकान है जहां पे किराने की सामग्री मिलती हैं।

कुछ पानी जहां पर फुक्करे बनकर उड़ रहा है कुछ महिलाएं वहां पर और पुरुष खड़े हुए है बाकी ग्राउंड साफ सुथरा और--

और कुछ उखठे पेड़ खड़े हुए हैं और ये पत्थर की चट्टाने है।

यह लगता है बफर का कार्य चल रहा है।

यह बस स्टेन है जहां पे बसें खड़ी होती हैं।

यहां सब पीछे एक साइकल चालक दिखाई दे रहा है।

यह डॉक्टर बी_के कश्यप की अस्पताल है कश्यप क्लीनिक ।

और मंदिर अच्छा दिखाई दे रहा है ये लगता है तुवन मंदिर है।

खंभे टाइप की इमारत दिखाई दे रही है जो ग्राउंड है ग्राउंड साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

एक पेड़े के छोटे से पेडे के नीचे एक बच्चा नजर आ रहा है।

यह होटल राधिका है गुरु कृपा टैंट है यहां पे भोजन व्यवस्था है।

और गुरु कृपा रेस्टोरेंट है और होटल में लोग बाग रहते हैं।

लाल चिड़ियों वाला और थोड़ा बच्चे के पीछे पानी भरा हुआ है।

यह एक बस स्टैंड है जहां पर अनेक प्रकार की लाल पि लाल हरी सफेद बसें दिखाई दे रही हैं।

यहां पे जो आगे का दृश्य टिन सेट है और कुछ पेड़े नजर आ रहे हैं।

ए टिकिया चाट का ठेला है जहां पे समोसा नजर आ रहे हैं चम्मच नजर आ रही है टिंगिया नजर आ रही हैं।

यह प्लेग्राउंड है यानी खेल का मैदान है।

यहां पर एक बच्चे की साइकल खड़ी हुई है बाकी और बैठे हुए हैं और बाकी और खेल रहे हैं।

यह इमारत है जो कॉलेज टाइप की दिखाई दे रही है।